खिड़की दिखाई दे रहा है।

जमीन पे बिछाया हुआ है।

बहुत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

साइकिल दिखाई दे रहा है।

ओ घर दिखाई दे रहे हैं नीले रंग का आकाश है।

बहुत सारा खिड़की दिखाई दे रहा है।

यह एक तालाब का दृश्य है।

नीले रंग का आकाश है।

एक कुड़सी रखा हुआ है।

सामने लाल कलर का थी पर लिखा हुआ है हीरो --

यह एक रूम का दृश्य है।

वहां पे एक सफेद रंग का घर है।

आइसक्रीम वाला ठेला वाला है।

यहां पे दो बस लगाया हुआ है।

यह लाल पीला कलर का है एक सफेद और नीला कलर का है।

बहोत सारे व्यक्ति लोग हैं।

खिड़की दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे खिड़की दिखाई दे रहा है।

दिवाल पे एप्लिकेशन चिपकने वाला है।

दीवाल पे लिखा हुआ है होम्योपैथिक दवा खाना।

और गिटारे दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा खिड़की दिखाई दे रहा है।

टेबल रखा हुआ है बहोत सारा मशीन रखा हुआ है साउंड कम करने वाला ज्यादा करने वाला।